नीला आसमान दिख रहा है।

क्लासरूम में बहोत सारे बच्चे हैं।

टीन का घर दिखाई दे रहा है।

मुझे बहुत बड़ा समुंदर दिखाई दे रहा है।

के ऊपर फटका पड़ा हॉस्पिटल लिखा है।

छोटा सा फूल बगीचा दिख रहा है।

मुझे आसमान दिखाई दे रहा है।

टैम्पू के बगल में एक आटो है।

तीन मैट रखे हुए हैं।